पहाड़ है मंदिर है पौधा है आदमी है सीढी है बहुत बड़ा है। फूल का पेड़ है बहोत सारा फूल का पेड़ है और बहोत-बहोत आदमी गाड़ी है।

इ सड़क है रोड है।